इस फोटो में मुझे आंगन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे सैलुन की दुकान दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे खिड़की दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे स्टूल दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो मे मुझे पानी की टंकी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे पार्क दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे बिजली के खंबे दिखाई दे रहे--